जिसमें बोहोत सारी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं इसमें बोहोत सारे बिल्डिंग्स की छत भी दिखाई दे रहे --

ये यह एक मंदिर जैसा दिख रहा है जिसके साइड में एक दो मूर्तियां बनी हुई है।

एक पेड़ की छाया इस सड़क पे दिख रही है इस छाया में एक मोटरसाइकल है।

इसमें एक काउंटर भी बना हुआ है और इसमें सीढ़ियों के पास दो आदमियों को खड़े हुए भी देखा जा सकता--

इस आंगन को जालियों से और कंक्रीट से बांधा गया है इसमें एक छोटा सा गेट भी है एंट्रेंस के लिए।

इस साइड से एक बहुत ही बड़ी दीवार भी बनाई गई है इसमें एक कमरा जैसा भी दिख रहा है।

एल_ई_डी के नीचे एक छोटा सा टेबल भी है जिसपे कि कुछ सामान रखा हुआ है।